यहा सामने गेट दिखाई दे रहा है जो लोहे का है यहा सामने भीमोका कलर औरेंज कलर से पूता है यहा लाइट दिखाई दे रही है यहा पर लोहे के गेट दिखाई दे--

इथ शनो का मंदिर दिखाई दे रहा यहाँ पर सफेद कलर की ए एक बिल्डिंग जैसा मंदिर जैसा दिखाई दे रहा जो कत्थई कलर से पेंट यहाँ सामने--